दो कैक्टस के पौधे हैं बहोत से बड़े-बड़े पेड़ है और भी बहुत अच्छे है--

ये एक फिल्ड है। हम्म किसी की जमीन है। जिसमें हम्म बोहोत गहरा होने के कारण इसमे बोहोत सा पानी लगी हुई है। उसके सामने दो घर हैं।

यह कोई कॉलेज का फोटोग्राफ है जिसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ रहे हैं सामने एक बोर्ड है।

इसके अन्तर्गत यहां मोटरसाइकिल में लोग हवा भराने के लिए या मोटरसाइकिल का कोई खराबी ठीक करवाने के लिए आते हैं।